साइड में एक व्यक्ति भी बैठे हैं वो भी किताब बेच रहे हैं।

यह एक घर है साइड में दो टेबुल रखे हुए है ब्लैक कलर के और दिवार में कुछ फोटो टंगे हुए है और हल्दी कलर के बल्ब से पूरा सीसा --